कान का रंग पीला और रेड है।

यह एक महावीर आयुर्वैदिक मेडिकल हॉस्पिटल भी है।

इस मॉल में बहुत सारे सामान हैं।

और कुछ बच्चों के खिलौने भी दिख रहे हैं खिलौने का रंग बिरंगे कलर में है।

यह मेडिकल स्टोर हैं मेडिकल स्टोर पर एक आदमी खड़ा हैं।

और हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

स्टैंड में बहोत बस दिख रही हैं यहां पर एक बस नीले रंग की है।

और एक सफेद बस भी है।

और वह एक हाथ में घड़ी भी पहने हुए है।

और सामने दो झंडे भी लगे हुए हैं झंडे लाल और पीले रंग के हैं।

और इसमें एक ऐ_सी भी है।